और उसके पास में कुछ लोग बैठे हुए भी नजर आ रहे है।

इस इमेज में हमें दो मुर्गे दिखाई दे रहे हैं यह मुर्गे--

एवं जे_सी_बी पार्ट्स का भी बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रेड कलर का सेंटर पॉइंट भी दिख रहा है।

ई अप्रिंग पेहने किसी पेशेंट का इलाज करता नजर आ रहा है।

यह गेट बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया हैं।

बहुत ही लंबी लोगों की लाइन लगी हुई है।

यह एक ढाबे का फोटो है इस ढाबे पर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।

जिसमें की एक ढाबा बताया है और वह ढाबा फिलहाल में बंद है।

इस इमेज में हमें एक ग्रोसरी की शॉप दिख रही है।

यह पूरा की पूरा शेल्फ तरह तरह की रंग बिरंगिया साड़ियों से।

यहाँ पर व्हाईट कलर के गद्दे बिछे हुए हैं और इस पर व्हाईट कलर की चद्दर लगी हुई है।

ब्लू कलर के छाते लगे हुए हैं और कुछ पौधे भी यहां लगे हुए हैं।

कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स रखी हुई दिख रही है।

यह एक पिकनिक की जगह है यहां पर सुंदर सुंदर पेड़ दिख रहे हैं।

जंगली बेलें जंगली झाड़ पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और यह एक स्कूल प्रीमाइसेस का फोटो है।

है और इस स्टेज पर बहोत सारे--

यह एक बस की फोटो है इस बस में कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं।